यहां पर ब्रेक डांस ए ब्रेक डांस स्मॉल बाय और बहुत ही अच्छे अच्छे झूले भी आते है यहां पर बहुत ही बड़ा मैदान है।